बँक के बाहर कई सारे लोग खड़े हुए है जो की एक आदमी जो की सफ़ेद और काले रंग की शर्ट में है पीछे बोर्ड के ऊपर पोस्टर सा छुटता हुआ--

पानी बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है इसपे दो लोग बैठे जिन्होंने वॉटरप्रू वॉटरप्रूफ जैकेट पहन रखी है ल उन्होने सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुयी है।

पीली रंग की छत दिखाई दे रही है आसपास में दो लोग दिखाई दे रहे है जो की पर्पल कलर की और नीले रंग की शर्ट पहनी हुए है इनके मुह पर मास्क लगा हुआ है उन्हो ने पेरोमे चप्पल पहनी हुई है वे खड़े हुए है।

यहा पर एक बिल्डिंग का दर्शन जहाँ पर टाइल्स दिखाई दे रही है वे लाल रंग की है जिसपर सीटे है सीटो पर कई सारे लोग बैठे जो की मोबाईल चला रहे है पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपर एक बोर्ड लगा है जो की पीले रंग का है उसपे लाल रंग का कुछ लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ--

मुझे दिखाई दे रहा है जिस पर काली धौलिया पड़ी हुई है उसने जूते भी पहन रखे है और ये सफ़ेद रंग की फुटबॉल से --

एक आदमी जो की गुलाबी रंग की शर्ट पहनके खड़ा हुआ है एक औरत को चाबी देता हुआ नजर आ रखा है उसने लाल रंग साडी पहन रखी--

यहाँ पर एक बिल्डिंग दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक शटर दिखाई दे रहा है उपर एक बोर्ड लगा है जो की सफेद और काले ल सफेद और लाल रंग का है।

मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में हरी हरी घास दिखाई दे रही मिट्टी दिखाई दे रही एक आदमी जो की लेटा हुआ है जिसने अपने करा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ जिसने नीले रंग की शर्ट पहने हुए --

यहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दुकान दिखाई दे रही है जो की पीले रंग की दीवार दिखाई दे रही है शीशा लगा हुआ है शीशे के अंदर कई सारी कुर्सिया लगी कुरसी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

रॅक दिखाई दे रही है रॅक पर कुछ सामान लटका हुआ है दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिसके सहारे कुर्सी बडी कुर्सीपे एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी जो फर्श पर खडा है जो की मोबाइल पे बात कर रहा है पीछे लाईटे जल रही है।

मे एक टी शर्ट पड़ा हुआ है जिसके निचे कही सारे बोरिया पड़े है बोरिया पर रंगबिरंगे फुल दिखाई दे रहे है जो की पीले और गुलाबी रंग के है।